दीवार भी गोल्डन चक है और सामने एक बोर्ड है।

ये एक रेलवे है और ट्रेन जा रही है।

अ लाइट्स अअ रिफ्लेक्ट कर रही है।

ये एक आंगन है और वहां पे गाड़ी पार्क की गई है।

और वहां पे वो रेड कलर का उसमें एज दिया गया है ब्लैक कलर का बोर्ड है।

कार है ऑटो हैऔर एक रेडी वाला है।

बाइक जा रही है उस पे एक आदमी सवार है।

यह एक कमरा है और यहां पे टेबल पे खाना रखा हुआ है।

थाली है उसमें राईस है चिकन है एक गिलास है और कुर्सियां है।

ये डॉक्टर हैं और उसके पास पेशेंट है।

डॉक्टर ने ब्लैक कलर के कपड़े पेहने हुए है।

तीन बाइक्स हैऔर इनह लोगों के कपड़े बाहर निकाले हैं।

और एक अ थंब है और सामने एक शॉप भी है जिसमें ब्लू कलर का बोर्ड है।

ये एक टाटा सोमो हैऔर यहां इस पे कुछ लिखा को है कोई बोर्ड हैउस पे और पीछे एक--

अ बेंच पे बैठा हैऔर धूप खिली हुई है बिजली का खंबा है और सामने एक बिल्डिंग भी है।

औररर ह तरबूज रखे हुए हैं।

दो आदमी खड़े हैं उन्हो एक नहीं अअ ब्लैक कलर का सूट और दूसरे ने--

और एक आदमी खड़ा हैउसने ब्लू कलर की--

और कॉर्नर में एक फ्लावर पॉट है।

और सामने ड्रायर पर कुछ चीजें रखी हुई है।

अ साइकल भी अंदर हैं और एक--

सामने व्हाइट कलर की गाड़ी है उसके साथ एक आदमी है।

सर रखने के लिए और ऊपर हैंडल्स है।

और स्स नीचे एक ब्लू कलर का कार्पेट भी है।

ये एक शॉप हैऔर यहां पे बुक्स खरीद रहे हैं।

और ये य साइड पे बलूंस लगे हुए हैं अ ब्लू ऑरेंज ग्रीन कलर के बलूंस व्हाइट कलर के बैलून से --

उसने वाइट पैंट और रेड शर्ट पहनी हुई है ऊपर से जैकेट ब्लैक कलर का डाला है।

आधे स्कूटी ज पे हैं आधे गाड़ी मेंह--

ये एक प्लेग्राउंड है और यहां पे बच्चे खेल रहे हैं।

औरर बाग में धूप छाई हुई है।

और दरवाजे पे भी एक बोर्ड है।

कुछ अअवाइट कलर का सुच दिखाई दे रहा है।

इसमें लोग जा रहे हैं एक आदमी इसके पास है उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और दूसरा आदमी उसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है।

ये एक प्लेग्राउंड है और यहां पर टॉस हो रहा है।

और वाइट कलर की वर्दी में है वो उनका जूता भी वाइट कलर का है।

ये गांव है और यहां पे दो महिलाएं--